एक रोड और है और यहाँ पे बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी इलाका लग रहा है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे हैं और धूप निकली हुई है और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और --

शी यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी पेड़ पहाड़ियाँ मिट्टी पड़ी हुई है और पेड़-पौधे भी बहुत सारे पेड़-पौधे लगे --

अंकल है और यहाँ पे इनका पुतला बना हुआ है और यहाँ पे कुछ देश के पस इन देश के पोस्टर लगे हुए है एंड ये बहोत बड़ा सा एक पिलर खड़ा हुआ है एंड --